उनका नाम बी डब्लू आर अल डी स्कूल --

मिनार को ऊ ऊँचे तक गए हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमे एक गोला सा बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे कई छात्र और छात्राएं --

खड़े हुऐ दिखाई दे रहे हैं और पीछे बहोत ही अच्छे से स्कूल का नाम जैसा सजाया हुआ और लिखा हुआ दिखाई --

कई तोते घर के अंदर बैठे हुऐ दिखाई दे रहे हैं और एक पेड़ सूखा हुआ दिखाई --

यह कोई टहलने वाला स्थान जैसा दिखाई दे रहा है।

और बाउंड्री खींची हुई दिख रही है उसके अंदर पेड़ भी दिख रहे हैं।